काफी अच्छा है इसके बगल अगल-बगल में एक पेड़ पौधा भी है पूरा --

खाताधारकों के खाते में सुरक्षित पैसा रहता है।

सीढ़ी लगा हुआ है जो सीढ़ी पे चल के बैंक जाता है अंदर घुसता है ।

यहाँ पे एक फील्ड है और फील्ड के बगल में एक अलबेस्टर का घर है और अच्छा लग रहा है पेंटिंग भी खूबसूरत है।

इस फोटो में एक बिल्डिंग है जो बहुत ऊँचा है और इस बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे तिरंगे --

झंडे है और उसके सामने पेड़-पौधे लगाए गए हैं हरियाली के लिए।

औरस अ देखने में अच्छे लग रहे हैं। घर का कलर -उलर अच्छा है और फैंसी घर है। अच्छा दिखने में लग रहा है।

ताकि अपने फेस को धो सके धोने के लिए पानी ऊनि रखा होता है और बैठने के लिए चेयर भी रखा होता है यहाँ पे --

ओ फोटो के सामने किताब चढ़ा कर पूजा किया जा रहा यहाँ पे लोटा रखा हुआ है और फूल वेगरा से यहाँ पे सजाया गया है ।

यहाँ पे दो गाड़ी खड़ा है जो एक ऑटो है और एक टोटो है |

यहाँ पे एक घर है बहुत पुराना महल लग रहा ये और इसके घर के बगल मे एक --

इसके चार पैर होते हैं और इसे हल जोतने में भी काम आता है भैंस को।

और टेले को पकड़ के एक जगह से दूसरे जगह टेल के ले जाया जाता है और यहां पे इसमे बहुत सामान डाल के बेचता है और पैसा कमाता है और लाभ भी होता है। इससे बहुत सारा --